java में for loop के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि java में for loop का प्रयोग कैसे करें
इस tutorial के लिए हम प्रयोग करेंगे
इस tutorial के लिए आपको java में relational operators relational operators और if statement का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो उचित tutorials के लिए कृपया हमारी निम्नलिखित website पर जाएँ
यहाँ for loop के लिए syntax दिया गया है
इसमें प्रारम्भन loop condition और वृद्धि शामिल है
इसके बाद इसमें for block है जो तब तक निष्पादित होता है जब तक loop condition true होती है
अब eclipse में एक उदाहरण लेते हैं
अतः eclipse पर जाएँ
हमारे पास पहले से ही forloopdemo named एक class class मौजूद है
main method के अन्दर for loop जोड़ते हैं
अतः main फंक्शन के अन्दर type करें int i semicolon
फिर for परेन्थिसिस में i equal to 0 semicolon i less than 10 semicolon i equal to i plus 1
यह कथन निर्णय करता है कि loop कैसे आगे बढ़ता है
i = 0 loop के लिए आरंभिक condition है
यह condition variable को शुरू होने की अनुमति देती है
i <10 loop की संचालन condition है
यदि condition true है तो for block निष्पादित होगा
अन्यथा इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा
इसका अर्थ है जब i 10 के बराबर या उससे अधिक है तो block निष्पादित नहीं होता है
फिर i = i + 1 बताता है कि loop variable को किस प्रकार बदला जाना है
यहाँ i का मान 0 से शुरू होता है
यह loop के प्रत्येक चक्र के लिए 1 बढ़ाता है जब तक यह 10 नहीं हो जाता
अब i में कुछ परिवर्तन करते हैं
अतः curly brackets खोलें और बंद करें
curly brackets के अन्दर type करें system dot out dot println और print करें i into i
यह 0 से 9 तक प्रत्येक संख्या के वर्ग को print करेगा
अब output को देखते हैं
अतः program को so और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं loop 0 से 9 तक की संख्याओं में संचालित होता है
प्रत्येक चक्र के लिए संख्या का वर्ग printed हो जाता है
अब सभी 2 अंकों वाली संख्याओं को print करते हैं जो 3 या 5 के गुणज हैं
अतः i का मान 10 से 99 के बीच होना चाहिए
अतः i equal to 0 को i equal to 10 से बदलें
और i less than 10 को i less than 100 से बदलें
फिर curly brackets के अन्दर हम केवल तभी संख्या print करते हैं यदि यह 3 या 5 की गुणज है
अतः type करें if brackets के अन्दर i mod 3 double equal to 0 या brackets के अन्दर i mod 5 double equal to 0
यह कथन जांच करता है कि i 3 या 5 से विभाज्य है या नहीं
फिर curly brackets में हम i का मान print करते हैं
अतः output को देखते हैं
अतः program को so और रन करें
हम देख सकते हैं कि संख्याएं 3 या 5 की गुणज हैं इस प्रकार हम java में for loop का प्रयोग करते हैं
हम इस tutorial की समाप्ति पर पहुँच गए हैं
इस tutorial में हमने सीखा कि java में for loop का प्रयोग कैसे करते हैं
एक नियत कार्य के लिए एक तीन अंकों की संख्या को armstrong संख्या कहा जाता है यदि यह इसके अंकों के घनों के योग के बराबर है
उदाहरण के लिए 153 बराबर है 1 का घन + 5 का घन + 3 का घन
ऐसी सभी तीन अंकों वाली संख्याएं ज्ञात करें
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
spokentutorial org/what is a spokentutorial पर उपलब्ध video देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल project को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके देख सकते हैं
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह script प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद